के सामने में नीले कलर के प्लास्टिक भी बोहोत सारी रखी हुई नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर हमें मस्जिद की नजर आ रही है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं।

चित्र में सब देखने को मिल रहा है जिसके सामने एस_बी_आई बैंक है।

एस_बी_आई बैंक से निकलता हुआ एक आदमी नजर आ रहा है जो की पीले और नीले कलर का शर्ट पहना हुआ है।

हमें इस तस्वीर में मंदिर सा दिखाया जा रहा है जहां पे दो शख्स जाते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके आजू बाजू साइड देखा जाए तो पूरा जंगल देखने को मिल रा--

इस चित्र में हमें एक चित्र दिखाया गया है जहां पे एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है जोकि सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ--

उनके सुप में हमें नारियल और भी आदि फल दिख रहे हैं।

इसके पीछे हमें काले कलर का गद्दा भी देखने को मिल रहा --

तस्वीर में हमें तालाब देखने को मिल रहा है जो की वाइब्रेशन जैसा लग रहा है शांत नहीं है पानी यहां का।

सूरज ढल रहा है शाम की वजह से हमें यहां पे बहोत सारे पेड़ भी है जो कि काले नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे हरे भरे पेड़ देखने को मिल रहे हैं जिसमें समय ज्यादातर नारियल के पेड़ देख सकते हैं।

और उसके ऊपर चार और उसके ऊपर तीन है और सबसे ऊपर दो गिलास है।

जिसमें हमें फ्रूटी भी दिख सकता है और स्प्राइट के बोतल भी नजर आ रहे हैं।

हमें यहां के यहां के खंभों पे हमें पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमे रेस्टोरेंट या फिर होटल जैसा दिखाई जा रहा है जहां पे हमे बहोत सारी बड़ी-बड़ी पेंटिंगे नज़र आ रही हैं।

यहाँ पे पिले ओर सफेद कलर की लाइटे जलते हुई नजर आ रही है।

यहां पे सीढ़ियां भी देखने को मिल रही है जो की लाल कलर कि हैं।

इस चित्र में हमें सफेद कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है और बहुत सारे नारियल के पेड़ भी दिखाई जा रहे हैं।

उसके पैन्ट का कलर सफेद है और आगे भी बहोत सारे लोग खड़े है।

इस चित्र में कुछ पतरे जैसा नजर आ रहा है जिसके नीचे कुछ जीव जंतु कुछ खा रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक टोकरी भी देखने को मिल रही है जोकि नीले कलर की है।

एक बच्चा झूला झूलता हुए देखने को मिल रहा है और यहां पे बहोत सारे जंगली इलाके हैं।

हमें पपीता का पेड़ भी देखने को मिल रहा है जिसमें पपीता लगे हुए हैं।

यहां पे एक ग्रिल भी देखने को मिल रहा है जो की हरे कलर का है।

किले के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पे कुछ बना हुआ है।

यहां पे साइड में हमें कुछ चे चक्र जैसा रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक होटल देखने को मिल रहा है।

एक पैर पोछना नज़र आ रहा है जोकि गेट के पास है और टेबल पर टिश्यू पेपर रखे हुए है।

ये उसके आगे एक लंबी सी नदी देखने को मिल रही है।

हमें यहां पर होटल स्वाद कठियावादी लिखा हुआ देखने को मिल रहा--

हमें इस नदी को तालाब जैसा दिखाया जा रहा है जिसके आगे भी ऐसा ही है।

जहां पे भगवान जी के गले में लाल कलर और सफेद कलर का माला डाला गया है।

में चित्र में एक घर दिखाया जा रहा है जो की ऑरेंज कलर का है और उसके नीचे लाल कलर किया गया है।

अंदर दो सफेद बोरिया यहां पे एक खिड़की भी देखने को मिल रही --

इस चित्र में हमे एक सड़क देखने को मिल रहा है जिसके आजू बाजू पेड़ है।

इस चित्र में हमें दो बस नजर आ रही है जोकि हरे कलर की --

हमें यहां बिजली का टावर भी देखने को मिल रहा है और एक सफेद कलर की बस भी देख रहे हैं हम।

इस चित्र में हमें एक शीशा दिखाया जा रहा है और एक सोफा भी दिखाया जा रहा है जिस सोफे का कलर ग्रे और ब्लैक है।

यहां पे लाइटें कुछ जल रही हैं जो की गोल्डन कलर की हैं।

हमें इस तस्वीर में टूल्स की दुकान दिखाई जा रही है जिस पे लिखा है बाबा पावर टूल्स ।

टूल्स की दुकान के बगल में एक सैलून भी देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पे यूज किए हुए टिशू पेपर भी देखने को मिल रहे हैं।

जहां पे एक सख्स दिख रहा है जिसका हाथ फैक्चर नजर आ रहा है जो की नीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

हमें प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे कागज रखे हुए हैं।

इस पेट्रोल पंप का फर्श सफेद और लाल कलर का है।

आसमान का कलर नीला लग रहा है और आजू बाजू जंगल ही जंगल हैं।

हमें इस चित्र में किसी भगवान की यात्रा जैसी दिखाई दे रही है जिसमें बोहोत सारे माले डाले हुए है।

इसके नीचे हमें बहुत सारी बाइक सारी स्कूटी पार्किंग देखने को मिल रही है।

यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं यहां के दरवाजे पे दो सौ छह लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक केबिन देखने को मिल रहा है जहां पे हमें तीन कुर्सियां लगी हुई नजर आ रही है और दो कंप्यूटर रखे हुए भी नजर आ रहे है।

और हमें एक काले कलर का लाइट का पोल भी देखने को मिल रहा है।

यहां हमें ग्रिल भी देखने को मिल रहा है जो जो कि काले कलर का है और एक साइड ईंटे का दिवाला भी देखने को मिल रहा।